यहां पर एक बड़ा सा घर दिख रहा है।

और औरतें दिख रही है कुछ आदमी साइड में दिख रहे है एक डस्टबिन दिख रहा है कुछ चेयरें दिख रही है जो स्टील की है।

यहां पर एक थाना कुम्हारी दिखाई दे रहा है जिसके नीचे कुछ गमले रखे है।

यहां पर एक बड़ा सा घर जैसा कुछ दिख रहा है जो सफेद कलर का है।

इसमें एक टेबल दिख रहा है जो ब्लैक कलर का उसके ऊपर एक कॉपी रखा है।

और दूर में कुछ घर जैसा दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक जंगल दिख रहा है।

यहां पर एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें शाम का टाइम हो रहा है।

यहां पर बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही हैं जो स्टील की हैं।

जो लोहे की बनी हुई है जो ब्लैक ग्रे और दीवार दिख रहा है जो ब्लू वाइट कलर का है।

यहां पर कुछ रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है।

और कुछ खिड़कियां और--

यहां पर एक दुकान दिखाई दे रहा है।

जो कुछ इधर-उधर ब खड़ी है और कुछ आदमी लोग और दिख रहे है और कुछ गाड़ियाँ बनाते हुए आदमी दिख रहे है।

यहां पर एक बड़ा सा मेला लगा हुआ दिख रहा है।

बैंगनी पिंक ब्लू ग्रे कलर की है।